पेड़ दिखाई दे रहा है बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे पौधे दिखाई दे रहे है बहोत सारे खिड़कियाँ दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

एक रिमोट दिखाई दे रहा टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें पानी का बोतल रखा हुआ है शीशा रखा हुआ है चश्मा रखा हुआ है।

एक हैंगर लगा हुआ हैं जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं नीचे का फर्श दिखाई दे रहा--

यहां पे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें एक सामने में एक सिलेंडर रखा हुआ जो रेड कलर का बहुत सारे पाइप दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बड़ा सा--

एक बड़ा सा लाइन बोल्ड दिखाई दे रहा है ऐ_सी दिखाई दे रहा है पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रीन और व्हाइट कलर का मस्जिद में एक सीडी दिखाई दे रहा है चोंगा दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े लाइन के पत्--

यहां पर मुझे एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक मालगाड़ी लगा हुआ है जिसका कलर रेड कलर का मालगाड़ी के ऊपर बहुत सारे लाइटे दिखाई दे रहा है खंबा दिखाई दे रहा है।

साइड में बहुत सारे जंगल दिखाई दे रहे झाड़ियां दिखाई दे रहा है सामने में एक गिट्टी दिखाई दे रहा कचरा दिखाई दे रहा है--

यहां पे मुझे एक रेड कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने बंधन बैंक दिखाई दे रहा है जिसमें सामने में पंजाब नेशनल बैंक का लोगो लगा हुआ है।

पुल में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पानी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पत्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है पानी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है।

यहां पे सामने में एक गार्डन दिखाई दे रहा गार्डन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा गार्डन में बहोत सारे--

यहां पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं तो कुछ दौड़ रहे हैं फुटबॉल दिखाई दे रहा --

सामने में एक चटाई दिखाई दे रहा है एक चेयर दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बैलून दिखाएं दे ब्लैक कलर के पिंक कलर के बहुत सारे--

यहां पे एक कपड़ा का बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा दुकान के ऊपर दीवाल में छोटे छोटे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बैग दिखाई दे रहा है पेंट दिखाई दे रहा टि शर्ट दिखाई दे रहा है शर्ट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पोस्टर दिखाई दे रहा है।